इसमें जो लोग दिख रे इतने सारे लोग कुछ सीखने के लिए र र ऑफिस में बैठे हैं और जो अ कोई है कोई इसे गाइड कर रहा है कोई पर्सन है।

डिज़र्ट एरिया लग रहा है हाँ तो और--

ये कोई समुद्री समुद्री एरिया दिख रहा है वहां का आधा समुद्र का हिस्सा थोड़ा ब्लैक एंड वाइट पे दिख रहा है।

और वो रस्सी बंधा हुआ है उसने और चेयर दिखाई दे रहा है और दो लोग वहां पे काम--

और खुला आसमान स्काय दिख रहा है और वहां नदी में--

ये कोई माउंटेन साइड इलाका लग रहा है और वहां पे एक हेलमेट पड़ा और एक--

शायद कुछ चेकिंग बैकिंग कर रहे हैं और शॉप का दुकान थोड़ा सा नीचे से ढका हुआ है ताकि--

पर्चा लेके निकाल रहा चेकिंग करके शायद दोतीन लोग एक बूढ़ा अंकल और एक बच्चा--

और इसके ऊपर से फोटो खिंचा गया और देखने में अच्छा लग रहा और उसके नीचे और भी दो तीन शॉप दिखाई दे रहे हैं --